यहा पर आप लोग देख सखते है सामने कि तरफ ये कुछ का ऑफिस बना हुआ है जो कि काफी बड़ा है ये येल्लो कलर का है।

इसके नीचे काफी सारे दुकाने भी बनी हुई है । यहा पर इसके बाहर भी काफी सारी कार बाइकस स्कूटी खड़ी हुई है जोकि आप लोग देख सकते है।

उसके बाहर एक बीजलि का मीटर भी रखा हुआ है और इस बैंक मे काफी सारी खिड़किया भी दिखाई दे रही है इसकी बाहर की दीवाल ब्राउन और व्हाइट कलर की है जोकी आप लोग देख सकते है।

यहा पर इसका टाइम भी लिखा है सिक्स पी_एम टु नाइन पी_एम और यहा काफी सारे बोर्ड भी लगे हुए है।

इन घर के बाहर काफी सारी बाइक और स्कूटी भी खड़ी हुई है और यहा पर लाइनसे काफी सारे बोर्ड और पोस्टर्स भी लगे हुए है।

यहा पर अलग अलग लाइन से बहुत सारी कार्स खड़ी हुई है और यहा साइड मे काफी सारी बाइक और स्कूटी भी खड़ी हुई है यहा से कुछ लोग भी हमे आते जाते हुए दिखाई दे रहे है और कुछ पोस्टर्स भी लगे हुए --

यहाँ पर आप लोग देख सकते है ये एक मेन रोड की फोटो है जहाँ पर की सामने की तरफ काफी सारी अलग अलग दुकाने बनी हुई है।

जोकि आप लोग देख सकते है और काफी सारे मकान भी बने हुए है।